यहाँ एक बच्चा आकर यहाँ कीचड़ से खेल रहा है जो लाल और सफेद रंग की शर्ट पहना हुआ है दूर पर सुखा जो --

थोड़ी दूर पर थोड़े से बच्चे खेल रहे है यहाँ पर बहोत सारे झाड़ हैं।

यहाँ एक आदमी पत्थर पर काले रंग का शर्ट पहन कर बैठा हुआ है।

यह एक ग्राउंड का नज़ारा है जिसमें बहुत सारे बच्चे क्रिकेट वॉलीबॉल फुटबॉल वो सब खेल रहे हैं।

यहाँ पर बहुत सारे आदमी नजर आ रहे है और यहाँ सामने एक बिल्डिंग बना रहे है और यहाँ बहुत सारे पेड़ --

यह एक किताबों और पेन्सिलों पेनों की दुकान है जिसमें बहुत सारे गुलाबीलाल पीले हरे नीले हर रंग के पेंसिल और पेन नज़र आ रहे हैं।

यह एक दुकान नजर आ रही है जिसमें महीने भर का राशन और घर के सामग्री सब ला सकते है।

यहाँ पर टमाटर थोड़े बहुत पीले है और सफ़ेद है।

खाना खाते हुए की चित्र है जिसमें यह बिरयानी खा रहा है और बाजू इसके दाल और दही रखा हुआ है।

यह एक बच्चों के लिए खेलने के सामान की दुकान है जिसमें कार मोटर साइकिल जैसे छोटे-छोटे वाहनों के खि-खिलौने है।

ये एक बहुत बड़ी नदी का नजारा है जिसमें बहुत ज्यादे गुड़ और पत्तरे नजर आ रहे है।

यह एक सब्जी मंडी की गली है जिसमें हम हरी मिर्च लाल मिर्च और बहुत सारी हरी- भरी तरकारी देख सकते हैं दूर पर बहुत सारे अदमी तरकारी को भाव पर ले रहे हैं।